बहुत सारी मछलिया दिख रही है तीन लोग पालटी मार कर बैठे हुए है तीनो के फेस पर मास्क लगे हुए है।

--और साइड मे कुछ बोतले दिख रही हैं और कांच मे एक लड़का दिख रहा है।

एक आदमी बड़े सारे पॉलीथिन के अंदर छोटी-छोटी मछलिये रखे हुए बैठा हुआ है उस आदमी ने ग्रीन व्हाइट कलर के ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

एक लड़का है खेत में खड़ा हुआ है उसके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए है ईयरफोन्स का कलर वाइट दिख रहा है।